देखत है की कोई मोटर साइकिल बाइक साइकिल मोटर साइकिल पर दो आदमी जात है इनका यई लोकत है।

कुल पनखा वनखा सामने-आमने लउकत ह। कुल कुर्सी-उर्सी भी दिखत बा। निचवा कुल टाइल्स वाइल्स देखत तनी लगल बा। कितना सुन्दर डिज़ाइनो बनल ह।

सामने प्रोजेक्टर पर कुछ पिक्चर था और लाइटिंग व्हिटिंग एक दम मस्त टाइल्स-वाइल्स लागल बा चारों और खिड़की से रोशनी आवत बा |

इ त देखतानी कि कुल एकदम गाड़ी वाड़ी लउकता सफेद रंग के कुल बाइक वाइक साइकिल आईकिल दिखता। कुल सूरज के प्रकाश आवत बा --

कुल पेड़ वेढ़ भी हरा-हरा लउकत आ कुल मोटर साईकिल खडल बा और एक गडिया लउकता कला रंग के कुछ शीशा -वीसा लगल बा केत्ता सुन्दर-सुन्दर नीक डिज़ाइन बा।

तो देखत आनी की इहो पटरी वटरी लउकत आ बनारस के बोर्ड लागल बा कुल एक दम स्टेशन स्टेशन बा कुल प ट्रेन वेर आत जात बा कुल एक दम बइठे खातिर कुल।

इहो देखतानी की कउनो जिम उम लगत बा कुल जिम उम के मशीन उशीन रखल बा कुल देखतानी चारो ओर दौड़े खातिर कुल करे खातिर एक्सेरसाइज ओक्सर्साइज़।